इस ऑफिस के कॉर्नर में एक लड़की कुर्सी पर बैठकर काम कर रही है।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

यह पार्सल ब्राउन कलर की पैकिंग से पैक किए हुए हैं।

सारी लायटिंग की हुई है इस हाल में एक सेंट्रल ए_सी लगा हुआ है इस हाल में--

सोफसेट्स रखे हुए है यह एक फर्नीचर --

मुझे इस चित्र मे एक घाट नज़र आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक दुकान दिखाई दे रहा--

मुझे इस चित्र में एक रोड दिखाई दे रहा है।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

लाल कलर के गुलाब के फूल है यह दुकान फूलों की दुकान है।

उस पहाड़ से एक झरना बहते हुए नीचे नदी मे मिल रहा--

बीच मे एक छोटी सड़क जा रही है इस सड़क पर एक रेलिंग लगी हुई है और दूसरी तरफ--

मुझे इस चित्र में एक बड़ा हॉल नजर आ रहा है।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

मुझे इस चित्र में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

इस स्कूल के हॉल मे कुछ छात्र जमीन पर बैठकर--